यहाँ पर एक डांस क्लास है जो कि यहाँ पर बड़े बुढे बच्चों सभी लोगों को यहाँ पर डांस सिखाया जाता है।

यहाँ पर एह लोग इनकी तस्वीर निकलवा रहे है यहाँ पर दूल्हा-दुल्हन को उनकी शादी की बधाइयाँ देने एह लोग आए हुए है एह लोग----

यह किसी पा पानी स्टॉप डैम की तस्वीर है इस पानी स्टॉप डैम मे छोटे छोटे गेट लगे हुए है ओैर डैम जादा बड़ा नहीं है छोटा ही है।